यहां येलो कलर का ऑटो दिख रहा है जिस पे कांच साफ करने के लिए वाईपर लगा है।

सामने एक आदमी लेटा हुआ दिख रहा है और एक आदमी जिसने चश्मा और मास्क लगाया है और हाथ में व्हाइट ग्लफ्स पहने है ब्लैक पैंट ब्लू टी -शर्ट पहना है।

सामने एक दरवाजा दिख रहा है जहाँ दो लड़के खड़े है दरवाजे का कलर ब्राउन कलर का है।

सामने कप्यूटर रखा है सामने एक बोर्ड है जिसके ऊपर लाल कलर की लाइट जल रही है सामने कूलर भी रखा है और एक आदमी खड़ा है और एक आदमी बैठा है।